एक आदमी रिक्शा चला रही है और दो आदमी बैग लेकर चल रही है और --

मंदिर बहुत ही देखने में अच्छा लगता है और मंदिर के पीछे एक पेड़ भी है और एक घर भी है और कुछ खम्बे भी हैं और सफ़ेद कलर का खम्बे है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में--